कांच दिख रहे है ऐसी के बॉक्स हमे दिख रहे है बेंच चेयर हमें यहां पे दिख रहे हैं।

नेट हमें शो हो रही है फैन उम शो हो रहा है अ कुछ मशीन --

देन हमें यहाँ पे पाइप शो हो रहा है | विन्डोज शो हो रही है | डेट शो हो रही है | ऑटो रिक्शा शो हो रहा है। बैट्री वाले शो हो रहे हैं।

उम्म यहां पर हमे कुछ हॉल शो हो रहे है यहां पर बहुत सारी चेयर्स हमें दिख रही है लाइटिंग्स हमें दिख रही हैं स्पीकर हमें दिख रहे हैं बैनर्स हमें दिख रहे हैं स्टेज हमें दिख रहा है अ स्टूल पे व्हाइट कलर के कपड़े बिछाए हैं वो हमें दिख रहे हैं लाइटिंग्स हमें बाहर भी दिख रही हैं।